और एक बेड दिखाई दे रहा है।

उसके साइड में एक ब्लैक कलर का डस्टबिन रखा है।

येह एक कपड़े की शॉप हैं।

छत के ऊपर ग्रीन कलर की चद्दर है।

यह एक ऑफिस की पिक्चर है इसमें टेबल और चेयर रखे हुए हैं।

कुछ बच्चे सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं और कुछ नीचे आ रहे हैं।

इसके अंदर बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं और एक झंडा दिखाई दे रहा--

जिसनें पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी है पेड़ बहुत बड़े-बड़े है।

ग्रिल भी बनी हुई है जिसके पास एक आदमी और एक औरत खड़े हैं।

लगे हुए हैं टेबल के ऊपर कंप्यूटर रखा है और--

छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दीवार की छत पर पंखे लगे हुए हैं और जगह जगह यीशु मसीह की फोटोए लगी हुई है।

यहाँ पर नट भी दिखाइ दे रहे हैं।

और यह पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं।

और एक खंबा दिखाई दे रहा।

क्रीम कलर का पेंट किया हुआ है।

ट्रॉली ऐरो एरोप्लेन और बहुत सारे टॉय रखे हुए हैं।

पीछे की तरफ लक्कड़ के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं सोफे का कलर --